यह यहाँ पर रोड दिखाई दे रहा है यहाँ पर टैक्सी भी दिखाई दे रही है यहाँ पर गाड़ी भी दिखाई दे रहे है यहाँ पर लाड़ लाइट भी दिखाई दे रही है यहाँ पर गाड़ियां भी दिखाई दे रही है यहाँ पर--

यहाँ पे दो व्यक्ति खड़े है यहाँ पे ध्वजा रोपण हो रहा है।

ओर सफेद फ्रॉक गुलाबी फ्रॉक ओर लाल टोपा लगाए हुए है यहाँ पर बहोत सारे बच्चे दिखाई दे रहे है यहाँ पर पेड़ दिखाई दे रहे है यहाँ पर बसे दिखाई दे रही है।

स्टोर लग रही हैं यह यहाँ पर एक औरत चाय पीते हुए दिखाई दे रही हैं यहाँ पर एक बच्चा बैठा हुआ हैं यहाँ पर एक बच्चा मास्क --